अ सेल्फी फोटो घिचवा रहा है अ इधर उसके बगल में गुब्बारे लगे हैं।

और यहाँ खिड़की भी अच्छे-अच्छे लड़के हैं जो बहोत अच्छे लग रहे हैं और यह झल्लर दिख --

दीपों से सजाया हुआ है और यह मंदिर बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है और मंदिर के बाहर --

जो पिंक कलर का उ येलो और रेड कलर का छप्पर है और पिंक कलर का दीवार।

और उससे अपना रुपया निकालते है जितने खाता में रुपया रहता है उतना रुपया लेते है।